यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है एक महिला दिखाई दे रही जो की पत्थरो के ऊपर खड़ी हुई है।

यहाँ पर कुछ हरियाली सी लगी हुई है खंड खंडर के उपर जो दिखाई दे रही है| एक व्यक्ति के इस व्यक्ति के सामने एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है।

यह पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है कुछ जिम का समान रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।

जो दिखाई दे रही है। दो गमले दिखाई दे रहे है। जिसमें हरे पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि मांस बेच रहे हैं। मछलियों बेचे रहे हैं। कुछ व्यक्ति बैठे हुए है। कुछ खरीद रहे हैं। कुछ जा रहे हैं। एक ट्रक दिखाई दे रहा है।

कमरा सजा हुआ है। स्टार्स लटके हुए हैं। चटाई बिछी हुई है। दरवाजा दिखाई दे रहा है। खिड़की दिखाई दे रही है। एक पर्दा दिखाई दे रहा है जो खिड़की पर लगा हुआ है।

यहाँ पर जिम का समान डला हुआ है जो दिखाई दे रहा है पंखे लगे हुये हैं जो दिखाई दे रहें हैं एक जाली सी लगी हुई है जो दिखाई दे रही है।